जिन्हे यहाँ घूमने जाना होता है। कहीं जाना होता है। यहाँ उसके लिए बस लेने आते है और यहाँ बहोत भीड़ है।

निकालने के लिए आते हैं और लोग कुछ अपनी पर्सनल चीजे भी यहाँ पर सेफ रख सकते हैं।

फंक्शन कर रहे हैं।

कंस्ट्रक्शन है।

अलग-अलग इकठ्ठा किया जाता है।

झील या कोई सरोवर है। जहाँ पर बोहोत से लड़के स्नान कर रहे हैं और --

सुंदर-सुंदर क्यारी लगी गई हैं। टाइल्स लगाए गए हैं।

फेसलों को सुलझाने के लिए यहाँ पर आते है और अपने तकलीफो को --

देखने में यह एक शॉप लग रही है।